यह हमें एक घर दिख रहा है बाहर से हमें कुछ मूर्तियां नजर आ रही हैं।

यहां पर हमें केनरा बैंक नजर आ रहा है और बैंक के बाहर कुछ बाइक खड़ी हैं कुछ लोग खड़े हैं।

ये एक पहाड़ है जहां पे झरना लगा हुआ है पानी--

और एक जो लड़का है बुक ले के हाथ में खड़ा हुआ है।

पहाड़ का एरिया है गाड़ी खड़ी है सड़क दिख रही है।

और कुछ यहां पर लोग खड़े हैं एक शॉप भी है यहां पर।

ये कोई बड़ा हॉल नजर आ रहा है जहां पर काफी सारी चेयर्स टेबल लगे हुए हैं जो हमें यहां पर नजर आ रहे हैं।

ये हमें पहाड़ी एरिया नजर आ रहा है।

ये किसी मंदिर का दृश्य हमे दिख रहा है यहां पर एक लेडी खड़ी है जो फोटो खिंचवा रही हैं।

जहां पर टेबल पर बलूंस लगे हुए हैं केक रखा हुआ है।

ये हमें एक शॉप नजर आ रही है जहां पर ये गिटार वगैरह यहां पर रखे हुए हैं शायद ये हार्मोनियम वगैरह भी रखे हुए है।

ओर अवजारे यहां पर मिलते हैं एंड --

और ब्लू कलर का जो है टेबल रखा हुआ है।

कारे खड़ी हुई है और जो लोग हैं वो भी यहां पर खड़े हुए हमें नजर आ रहे हैं शायद ये कोई पार्किंग है।

यहां पर हमें घर बनता हुआ नजर आ रहा है जहां पर घर का लेंटर डल रहा है।

हरे पौधे नजर आ रहे हैं और जहां यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है।

सुंदर सा ऊपर आसमान है जो बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है और रेनबो बना हुआ है।

यहां पर हरे भरे पौधे नजर आ रहे हैं।

देखने में अच्छी लग रही है फ्रूट शॉप ।

और वो जो बंदा है वो बाहर को फिंगर कर रहा है आसपास घास भी है।